कुछ मछ मछलियाँ कटोरों में डली हुई हैं।

अ यहाँ पे न आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पे रोड है।

यहा पे काच काच का गेट लगा हुआ है। उसके अंदर सामान रखा है। यहा पे एक टंकी रखी है ब्लू कलर की उसपे एक मग रखा है।

और यहां पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

कुछ लडकियां अ घूम रही हैं। कुछ लेडीजे हैं। कुछ छोटी-छोटी बच्चे हैं। जेंट्स घूम रहे हैं।

और बिल्डिंग्स के बाहर बड़ा सा ग्राउंड है और यहां से रोड भी है।

यहाँ पे एक हॉल है।

और छन्निया रखी हुई है रंगोली बनाने वाली।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। बाहर उन्होंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। आसमान थोड़ा सा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे प्रतीक्षालय बने हुए हैं।

और यहाँ पे हॉल में खिडकियां बनी हुईं हैं।

साड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पे --

एक भैया कार में से हाथ निकाल रहे हैं बाहर।

बिल्डिंग के अन्दर एक खम्भा है उसमें डोरियां --